हमें यहाँ पे रंगीन मोतियाँ भी दिख रहीं हैं।

जो घर है उसके आस पास की फेंसिंग ऑरेंज कलर की दिवालों से की गयी है और घर के आस-पास एक सफ़ेद रंग का घर है जिसमें दो खिड़कियाँ लगी गयी लगी हुई हैं।

यहाँ पर एक घर बन रहा है जिस जिसकी निर्माण हो रहा है और तो और --

यहाँ एक कैफ़ेटेरिया है। जहाँ पे लिखा हुआ है। कोल कैलो --

चित्र के नीचे जो पीले अक्षरों से लिखा गया है। वह इस दृश्य के बारे में बता --

जो कि काँच से बना हुआ है। इसके पि बाहर बोहोत सारे लोग हैं।

यहाँ एक काला रंग का बिल्डिंग है जिसमें बोहोत सारी खिड़कियाँ लगी हैं। यह तीन मंजिला बिल्डिंग हैं। यहाँ पर --

आस-पास बहुत सारे अ सुंदर-सुंदर डांस फ्लोर्स हैं।

उसके बगल में मिर्चियां है कुछ मिर्चियां बड़ी है कुछ मिर्चियां छोटी है।

और यहाँ पे कुछ किताबें भी हैं।

और उसके ऊपर कोन रखा गया है।

और आस-पास बहुत सारे पेड़ हैं।

बोहोत सारे लोग यहाँ पे आये हैं जो की सब्जी खरीद रहे हैं।

चारों तरफ और यह ताज महल है उसके आगे। वहाँ पर बहोत सारे लोग हैं।